ये एक बहुत बड़ा सा न बाँस का बना हुआ है उम।

रस्सी बाँधा हुआ है नाक से ले के गले तक रस्सी बाँधी हुई है और उसपे एक लाल कलर का भी रस्सी--

बांधा गया है और वो खा रही है उसके कान हलके भूरे कलर के हैं।

फोटो लगी हुई है अंदर में बड़ा सा एक बॉक्स रखा हुआ है और बाहर में भी एक बड़ा टोकरी में कुछ समान र--

इलेक्ट्रॉनिक मशीन है बहुत सारी डॉक्यूमेंट भी बहुत से सामान रखे रखा हुआ है छोटी छोटी मशीन हैं।

एक बड़ा सा पोस्टर्स लगा हुआ है बहुत सारी अलग अलग कैटरिंग बनी हैं अलग खाने पीने की मिठाईयाँ अलग अलग हैं।

बहुत सा लाईट लगा हुआ है झूमर लगा हुआ है और बड़ा सा बैठने के लिए टेबल --

बहुत अच्छा सा एक बड़ा सा बना हुआ है छत पे अलग अलग कलर से कलर किया गया है लगी हुई--

बहुत सारे अच्छे से डिज़्ज़ाइन डेकोरेट किया गया है फूलों से सजाया गया है और साइड में--

बिल्कुल सजा ते पड़े-पड़े घर उनके लिए रखा हुआ है।

ये एक बहुत बड़ा सा कैफे बना हुआ है जहाँ पे बहोत सारे टेबल रखे हुए हैं और बहोत सारी चेयरें लगी हुई हैं।

बीच में कपड़े की दुकान जूते चप्पल की शॉप है जा पे दोनों साइड में--

ये एक बहुत बड़ा सा बेडरूम है बना हुआ है जहा पे दो बड़े-बड़े बेड है और उस पे येलो कलर का चादर बिछा हुआ है ।

ये एक बहुत बड़ा सा सलून है जहाँ पर बाहर में पोस्टर लगे हुए है बहोत सारे लडको के जिसका नाम है फ्रेंड ब्यूटी बलम --

टंकी लगा हुआ है और बीच में बहोत सारी बाइके खड़ी है स्कूटी खड़ी है अंदर में लोग बेठे हुए है मास्क लगा के एक आदमी जो बहर में मास्क लगा के बाहर खडे है।

ये एक बहुत बड़ा सा हॉल बना हुआ है जहाँ पे पर्दे लगे हुए हैं और साइड में भी बहुत सारा सिटिंग एरिया बैठने के लिए बनाया गया है।

और एक दो दिन आदमी पाँच छे हाथ में हैं जंगल को बीचों बीच एक--

बहुत बड़ा सा कार है जिसको एक अलग दूसरी कार से कंधे में टाँग के ले जाया जा रहा है।

ये एक बड़ा सा शॉप है जहाँ पे फल मिलते हैं बहुत से लोग बैठे--

नीम्बू है छोटा वाला अनार भी है और न और तरबुज्जा रखा हुआ है।

और बहुत से हथ धूले रखा हुआ है और अलग अलग दे के छोटे-बड़े से स्कूप रखा हुआ है।

और एक बड़ा सा सीढ़ी लखा हुआ है पेट्रोल पम्प के पास में पी_टी_एम के पास साइड में बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं।

वहां पे बहोत सारे फूल लगाए हुए हैं बड़ा सा पेड़ नजर आते--

ये एक बहुत बड़ा सा नदि बना हुआ है और साइड में बड़ा पत्थर है।

फूल उल लगाए गए हैं बड़ा सा एक हॉस्पिटल बना हुआ है हेल्थ केयर सेंटर है जहां पे बहोत बड़ा सा रोड है बड़ा सा--

एक बड़ा सा शॉप है मॉल टाइप का जहाँ पे भी कपड़े मिलते हैं बाइक पेर मेरा भाई खड़ा है।

ट्विन टावर बनाया हुआ है और बहुत सारी पिक्चर्स लगी हुई कॉफी की खाने की पिक्चर्स हैं और उसमें लिखा हुआ है फ़ूड --

बहोत से लोग फोटो खिंचा रहे एक लड़का है जो बीच में एक बड़ा सा लकड़ी है और बहोत से लोग खड़े साइड में पत्थर है बहोत सारे --

और प्रिटिक बड़ा सा पिक्चर बना जिसमें डब्बा बने जिसमें सगीरा लिखा हुआ है।

गाँव में उसके ऊपर एक झोपड़ी बना हुआ है उसके बगल में एक लगा सार्थक फाउंडेशन की चॉल एडुके --

एक सर खड़े हुए बच्चों ओ बता रहे हैं क चेयर रखा है और रेड कलर का एक बड़ा सा ठेला लगा हुआ है एक --

एक और चेयर रखे थे जिस खड़ी है छोटे छोटे बच्चे हैं जो सब नीचे बैठे के पढ़ रहे हैं बैग ले--

बहुत सारे सोफे रखे हुए हैं बैठने के लिए एक बड़ा सा टेबल लगा हुआ है एम--

और बहुत सारी मशीनें लगी एक बड़ा सा जे_ सी_ बी भी है औ ब दूर दूर में बड़े बड़े टावर बहुत सारे लगे हुए हैं।

राइस बना हुआ है जहा पर बहोत सारी ग्रिल लगी हुई है और साइड में बड़ा सा खेती किया गया है वहाँ पर ईटा सरिया कर रखा गया है--

एक बहुत बड़ा सा पहाड़ी इलाका है जहाँ पे बहुत सारे ईंटें पत्थर हैं और सब लोग बैठ के फोटो ले रहे हैं यहाँ।

बहुत सारी लगी हुई हैं और पत्रों पे बहुत उम लेडीज़ बैठी हुई हैं सारी पेपरों पे एक को पकड़ के बैठे हुए हैं लोग।

ये भी एक बहुत बड़ा सा साइट में बहु ही बड़ा सा लन तालाब है।

कमल के फूल डिज़ाइन में बहुत सारे कमल के फूल पत्ते उगे हुए हैं उसमें बहुत सारे कमल के फूल खिले हुए--

लोगो बहोत सारा भना हुआ है एक बड़ा सा डेस्क लगा हुआ है जिसमे बहोत सारी कुर्सी लगी हुई है जिसमे बहोत अच्छे से बलून्स है और कागज से सजाया गया है इसको और बहोत सारे केलेंडर दो तिन केलेंडर रखे ही है।

बहुत बड़ा सा साइकिल रोज यहाँ पे लाइनें बनी हैं एक कोता पूरा मूस्त स्टार --

टूल लाइन में बहुत सारी मिनी बस जाएंगी स फास्ट लाइन में फर्स्ट लाइन कार और थ्री व्हीलर और खहारे जाएंगी।

थड्ज़ थर्डी लाइन थ्री में लिवीस्ट्रा --

ईटा से और साइड में भी बड़ा सा सीढ़ी लगा हुआ है जिसे बहोत से लोग बच्चे चढ़ के अंदर की ओर जा--

ये एक बड़ा सा रूम बना हुआ है और ब गैरेज बना है बहुत सारे--

ऑफिस को खोल के हथौड़ी रखा गया है और एक बड़ा सा कार खड़ी की है वैसे तेल रखी हुई--

बहुत सारी ए बड़ा सा मशीन रखा हुआ है उसपे कॉ टैप कॉप कैप पहेन के एक बड़ा सा सोफा रखा हुआ है और ए--

बड़ा सा कलर बाल किक बड़ा सा साइड यहाँ पे अलग-अलग तरीके की शेम्पू रखी हुई है कलर रखी हुई है हेयर कलर बहोत सारी रखी हुई है अलग-अलग टाइप की शेम्पू --

अलग अलग तरह के चार पांच लाइन बनी हुई बड़े बड़े लाइट्स लगी हुई है ट्यूब लाइट लगी हुई है पंखा लगा हुआ है।